और एक बच्ची को पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।

साफ आसमान दिख रहा है पीछे की तरफ एक बड़ा पर्वत दिख रहा है एक छोटा पर्वत दिख रहा है एक झील दिख रही है एक नाव दिख रही है और दो लोग नाव में बैठे हुए है उस नाओ में कुछ सामान रखा हुआ है और एक नाओ चलाने वाला दिख रहा है।

एक सड़क दिख रही है उसपे बहुत सारी वाहन जाते हुए दिख रहे हैं जिसमें कुछ दो पहिया वाहन है। एक घड़ी दिख रही है। आसमान दिख रहा है। एक ऑटो-रिक्शा दिख रहा है अ कुछ बाइक दिख रही है। कुछ लोग पैदल जाते दिख रहे हैं।

चारो तरफ चट्टानें दिख रही है थोड़ी हरयाली दिख रही है चट्टानो में से निकलती हुई एक लड़का अंदर गुफा की तरफ जा रहा है एक लड़का बाहर खड़ा हुआ है मोबाइल से तस्वीर ले रहा है।